perl में फाइल हैंडलिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ:
आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट editor उपयोग कर सकते हैं
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको पर्ल प्रोग्रामिंग का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल्स वेबसाइट पर जाएँ
बुनियादी ऑपरेशन्स जो हम पर्ल में फाइल्स के साथ कर सकते हैं वो निम्न हैं:
डिफ़ॉल्ट फाइल हैंडल्स निम्न हैं:
यह ओपन फंक्शन के लिए सिंटेक्स है
सिंटेक्स में filehandle वो फाइल हैंडल है जो ओपन फंक्शन से रिटर्न किया जाता है
mode फाइल को खोलने के मोड जैसे: रीड राइट आदि दिखाता है
expr वो फिज़िकल फाइलनेम है जो रीड या राइट करने में उपयोग होता है इस स्थिति में firsttxt फाइल का नाम है
यहाँ प्रदर्शित की तरह ओपन फंक्शन को लिखने का एक अन्य तरीका है
अब समझते हैं कि एक मौजूदा फाइल कैसे खोलते हैं और इससे डेटा कैसे पढ़ते हैं
पहले हम एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और इसमें कुछ डेटा संचित करेंगे टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें: gedit firsttxt और एंटर दबाएं
first dot txt फाइल में निम्न टेक्स्ट टाइप करें:
फाइल सेव करें और gedit बंद करें
अब हम एक पर्ल प्रोग्राम देखेंगे जो firsttxt फाइल खोलता है और विषय वस्तु पढ़ता है
अब मैं openfilepl सैंपल प्रोग्राम खोलती हूँ जो मैंने पहले ही सेव किया है
टाइप करें: gedit openfile dot pl ampersand और एंटर दबाएं
openfile dot pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह कोड टाइप करें
अब कोड समझते हैं
open फंक्शन पढ़ने के लिए एक फाइल खोलता है
पहला पैरामीटर data वो filehandle है जो पर्ल को भविष्य में फाइल को देखने की अनुमति देता है
दूसरा पैरामीटर < लेस दैन सिंबल read मोड को दर्शाता है
यदि mode उल्लिखित करने में चूक जाता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल read मोड में खोला जायेगा
तीसरा पैरामीटर firsttxt उस फाइल का नाम है जहाँ से डेटा पढ़ा जाना है
क्या होगा यदि firsttxt फाइल मौजूद नहीं है
स्क्रिप्ट उचित एरर मैसेज के साथ जो डॉलर एक्सक्लेमेशन $! वेरिएबल में संचित है समाप्त हो जाएगी
वाइल लूप लाइन बाइ लाइन पढ़ेगा और और जब तक सारी फाइल न पढ़ ली जाएँ तब तक
print डॉलर अंडरस्कोर $_ वेरिएबल मौजूदा लाइन की विषय वस्तु को प्रिंट करेगा
अंततः filehandle नाम के साथ फाइल को बंद करें जो हमने ओपन स्टेटमेंट में दिया था
फाइल को बंद करना कंटेंट के ओवरराइट होने या फाइल के किसी भी आकस्मिक बदलावों से बचाता है
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
अब program को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें perl openfile dot pl और एंटर दबाएं
प्रदर्शित की तरह आउटपुट दिखता है
यह वही कंटेंट है जो हमने पहले first dot txt फाइल में देखा
आगे हम देखेंगे कि फाइल में डेटा कैसे लिखा जाता है
ग्रेटर दैन > सिंबल के साथ ओपन स्टेटमेंट write मोड को परिभाषित करता है
फाइलनेम उस फाइल के नाम को दिखाता है जहाँ डेटा लिखा जाना है
अब मैं सैंपल प्रोग्राम writefilepl खोलती हूँ जो मैंने पहले ही सेव किया है
terminal पर जाएँ
अब टाइप करें: gedit writefile dot pl ampersand और एंटर दबाएं
writefile dot pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह निम्न कोड टाइप करें
अब मैं code समझाती हूँ
ओपन फंक्शन secondtxt फाइल को write मोड में खोलता है
फाइलनेम से पहले ग्रेटर दैन > सिंबल write मोड को दिखाता है
पहला पैरामीटर file1 filehandle है
प्रिंट फंक्शन दिए गए टेक्स्ट को filehandle यानि file1 में प्रिंट करता है
अब फाइल सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
अब program को निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें perl writefile dot pl और एंटर दबाएं
अब जांचते हैं कि secondtxt फाइल में टेक्स्ट लिखा गया है या नहीं
टाइप करें: gedit secondtxt और एंटर दबाएं
हम अपनी secondtxt फाइल में निम्न टेक्स्ट देख सकते हैं: working with files makes data storage and retrieval a simple task!
अब हम secondtxt फाइल बंद करते हैं
क्या होगा यदि हम write मोड में समान फाइल दोबारा खोलते हैं उसे देखते हैं
writefilepl में पिछले print स्टेटमेंट को कमेंट करें
नीचे वाले print कमांड को जोड़ें
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं अब प्रोग्राम को नष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें perl writefile dot pl और एंटर दबाएं
अब secondtxt फाइल को दोबारा जाँचें
टाइप करें: gedit secondtxt और एंटर दबाएं
हम आउटपुट greater than symbol > overwrites the content of the file! देख सकते हैं
secondtxt फाइल के पिछले कंटेंट्स ओवरराइट किये जा चुके हैं
ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने write मोड में दोबारा फाइल खोली थी
अब secondtxt फाइल बंद करें
आगे हम देखेंगे कि मौजूदा फाइल में डेटा को कैसे जोड़ते हैं
दो greater than >> सिम्बल्स के साथ open स्टेटमेंट append मोड को दिखाता है
अब मैं gedit में दोबारा writefile dot pl खोलूँगी
open स्टेटमेंट में दो greater >> than सिम्बल्स टाइप करें यह दिखायेगा कि फाइल append mode में है
पिछले print स्टेटमेंट को comment करें जैसे कि यह पहले निष्पादित हो गया है
मौजूदा डेटा को जोड़ने के लिए एक लाइन जोड़ें: print file1 डबल कोट्स में two greater than symbols >> opens the file in append mode
अब फाइल को सेव करने के लिए ctrl+s दबाएं
अब program को निष्पादित करें
टर्मिनल पर वापस जाएँ और टाइप करें: perl writefile dot pl और एंटर दबाएं
अब जाँचते हैं कि secondtxt फाइल पर टेक्स्ट जोड़ा गया है या नहीं
टाइप करें: gedit secondtxt और एंटर दबाएं
हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट हमारी secondtxt फाइल में जोड़ दिया गया है
अब secondtxt फाइल को बंद करते हैं
उसी प्रकार अन्य मोड्स भी हैं
अपने आप इन विकल्पों का प्रयास करें और समझें क्या होता है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
इस tutorial में हमने सीखा:
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है writefilepl प्रोग्राम में फाइल एट्रीब्यूट को +> सिंबल में बदलें
प्रोग्राम को सेव और निष्पादित करें
आउटपुट देखने के लिए secondtxt फाइल खोलें
फाइल एट्रीब्यूट +> सिंबल के उपयोग का विश्लेषण करें
निम्न link पर उपलब्ध video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team:
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
spoken tutorial project भारत सरकार के एमएचआरडी के nmeict द्वारा निधिबद्ध है